और यहां पर बीच में बहुत सारे काले काले कुत्ते हैं जो कुछ लेटे हुए हैं कुछ सड़क पर चल रहे हैं।

यहां ब्लैक कलर के कुछ कपड़े जैसे कुछ रखे हुए है एक सफेद कलर का कट्टा बोरी कटिया पड़ा है।

तीसरे के अंदर भी यही होता है सभी लैपटॉप आसान तरीके से किस्त में मिलते है यहां पर।

बाहर से पौधे की डाली दिखाई दे रही है जिसके ऊपर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां लगी हुई है।

यहां पर एक रूम ये रूम के अंदर ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं दो --

ऐं तस्वीरें वो जो दीवार के ऊपर चिपकाई हुई है नीचे बहुत सारे फर्नीचर पड़े हैं।

है घर के पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है सामने लाइट वाले खंभे लगे--

एक दो लड़कियां खड़ी है और दूसरी लड़कियां सारी बैठी है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां --

यहां पर सामने एक बहोत बड़ी दुकान बनी हुई है यहां बीच में एक स्टूल पड़ी है कुर्सी पड़ी है सफेद कलर की।

उसके आसपास बहोत बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई है जो रेड कलर की और सफेद कलर की है और ऊपर एक पंखा चल रहा है।

इसके आगे एक गाड़ी खड़ी है सफेद कलर की इसके पीछे कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है बाहर सीढ़ियां बनी हुई है इधर एक बहोत ही बड़ा --